यहाँ पे छठी माता का पूजा हो रहा है।

ई माता का मूर्ति रखा हुआ है इंक है बगल में पेड़ है ।

देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है हाथ मे दस्ताना है

जैकेट का रंग ब्लू है जीन्स का रंग ब्लू है।

नाई काला जीन्स पहना है शर्ट पहना है।